एक शिक्षिका उनको देख रेख कर रही है पीछे काफी सारे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।

यहां जो दो यात्री दिखाई दे रहे है वो व्हील चेयर में है वो विमान विभाग के कर्मचारियो की मदद से ऊपर च-चढ़ने का कार्य कर रहे।